और बिल्डिंग मे चैन लगा हुआ है व्हाइट कलर का गेट है उसके अंदर एक गाड़ी खड़ी हुई है गी --

पेड़ लगे हुए है आस-पास खुला आसमान है यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है व्हाइट कलर की साइड मे नीचे पत्थरो का फरस बना हुआ है।

और कुछ बस के अंदर बैठे हुए है साइड मे टेंट डाला हुआ है।

एक बस स्टैंड है यहाँ पर काफी सारे बस खड़ी हुई है कुछ रेड कलर की है और कुछ व्हाइट कलर की है और यहा पर कुछ लोग भी खड़े हुए है और यहाँ पर काफी सारे पेड़ भी लगे हुए है।

यहा बड़ा सा मैदान रोड है गा। जिसमे गाड़िया खड़ी होंगी। जिसमे बीच बीच मे कटिंग से पौधे हैघास हेगे इसमे कुछ गाड़ी जैसे खड़ी हुई--